एक कारखाने की फोटो दिखाई जा रही है जहाँ पर कार रिपेयर हो रही है सामने की तरफ एक लड़का कार रिपेयर करते हुए दिखाई जा रहा है जिसने ग्रे कलर की शर्ट पहनी हुई है।

चार लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है एक अंकल ने ग्रीन कलर की स्वेटर पहने हुई है ब्लू जीन्स पेहना हुआ है एक ने वाइट कलर का शर्ट पेहनी हुई है एक बहुत बाद बॉक्स दिखाई दे रहा है एक तार पर कुछ टंगा हुआ दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में सामने की तरफ एक दीवाल दिखाई दे रही है जिसका कलर फिरोजी कलर का दिखाई दे रहा है | ऊपर के तरफ दो पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं अंदर के तरफ ब्लैक की शटर दिखाई दे रहे हैं एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने सिलवटी कलर की शर्ट पहनी हुई है।